दो स्लीपर कोच बस दिख रही है।

एक ब्लैक और येलो ऑटो दिख रहा है।

आस पास पेड़ दिख रहे हैं।